जो कि यहां की इ नर्स है जो कि आप देख सकते हो यहां ये काफी अच्छे से इलाज करते है।

आप देख सकते हो सामने सिटी कार्ड वगैरा भी है यहां पर काफी ज्यादा --

यहाँ से यह ऑटो जा रहा है इसमें फिलाल में अभी सिर्फ ऑटो ड्राइवर बैठा हैं बाजू में दो लोग बैठे सिर्फ आप देख सकते हो।

पहले दोस्तों आप देख सकते है जो की यहाँ पर फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पर ये डांस वगैरह कर रहे है जो भाई साहब है यहाँ पर --

ये देखने में काफी सुंदर है इसी रोड पर ये पूरी मट्टी है यहाँ की लाल लाल नजर आ रही --

सभी बाइक वगैरा खड़ी है आप इसके बाद जो है बाजू में शॉप वगैरा भी देख सकते हो यहां शॉप है यहां ईट वगैरा भी है इसके बाजू में।

यह जो बिल्डिंग हैं वो यहां पर इलाज वगैरा किया जाता है आप देखिए यह बिल्डिंग काफी बड़ी नज़रआ रही हैं इसके पास कई सारी बिल्डिंग देखने को मिल सकती हैं।